फर्श ब्राउन कलर का है वाइट दीवारें हैं।

एक लेडी फ्लावर सेल कर रही है।

बुक्स बहुत सारी हैं और अलग-अलग प्रकार की हैं।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं काफी बड़े और घने हैं।

ये एक रेलिंग सी लग रही है जिसका व्हाइट कलर है ये शायद रेलवे ट्रैक का है।

लाइब्रेरी में खूब सारी टेबल्स हैं और कुर्सियां रखी हैं जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं।

ये कुछ बदक के बच्चे हैं।

फूल दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़ों पे--

राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल का फंक्शन है।

इसमें कुछ मेडिकल्स की दवाइयां रखी हैं।

ब्लू कलर का कुछ गाड़ियां खड़ी हैं।

ये एक स्विमिंग कोर्ट है बड़ा सा यहां स्विमिंग कोर्ट --

आई घर घर के आइटम्स रखे हुए हैं।

बहुत सारा आइटम रखा है ये पूरा एक जर्नल स्टोर है।

प्लेट्सों के अंदर चम्मच भी रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक बड़ी सी फैक्ट्री है।

कुछ लाइट की वायर्स भी दिख रही हैं।

ये एक खेत लग रहा है यहां पर एक मजदूर खेत में कुछ काम कर रहा है।

ये एक फैक्ट्री जैसा लग रहा है बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े हैं।

शाम का वक्त लग रहा है आसमान में।